और बीच से फोहारा बह रहा है।

कुछ गाड़ियां काले कलर के हैं कुछ गाड़ियां व्हाइट कलर की है।

दुकान का दृश्य देख रहा है।

बगल में फर्नीचर का दुकान है और उसमें शटर लगाया हुआ है ऑरेंज कलर का।

लाइटें जल रही है पंखा चल रहा है।

यहां पर कई सारे घर का दृश्य दिख रहा है।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

यहां पे स्विच लगाया हुआ है।

बीच में एक पोल गढ़ा हुआ है उससे बहुत सारे तार इधर उधर गए हैं ब्लैक कलर का कनेक्ट है।

एक छोटा सा चेयर रखा हुआ है।

यहा पर दुकान का दृश्य देख रहा है।

इसमें शटर लगाया हुआ है ब्लैक कलर का।

बगल में वाइट कलर का पोस्टर लगाया हुआ है।

बीच में पाइप लगाया हुआ है ब्लू कलर का और छोटे छोटे रेक बनाए हुए हैं।

जिसके ऊपर करकट व्हाइट कलर का छाया हुआ है।

यहां पर बहोत सारे काले कलर का टायर रखा हुआ है।

बगल में बाइक लगाया हुआ है और बड़ा बड़ा टायर भी रखा हुआ है ट्रैक्टर का।

छोटे छोटे पेड़ पौधे हैं लगाए हुए और रोड बनाया हुआ है।

हवेली व्हाइट कलर का है और उसके सामने बहुत सारे पेड़ पौधे लगाए हुए हैं बड़े बड़े।

पोल से इधर उधर तार कनेक्ट है बीच में एक बड़ा सा पोल है।

दो बैलून लगाया हुआ है एक पर्पल कलर का एक ब्लू कलर का।

एक आदमी ने जो जैकेट पहना है ब्लैक कलर का और हाथ में बैग लिया है और उसके हाथ में थाली है थाली में खाना रहा हुआ है।

जिसके ऊपर तिरपाल से छाया हुआ हैं तिरपाल ब्ल्यू कलर का है।

रूम में एक छोटा सा स्टेज जैसा बनाया हुआ है नीचे में।

दुकान में पेन टंगा हुआ है।

सामने एक टसफरमा का दृश्य दिख रहा।